टाइल्स के बदल में हमें यहां पर बेसिन देखने को मिल रहा है बेसिन के बदल में हमें।

इसके ऊपर हमें यहां पे टूरिस्ट का समान बन्धा हुआ है।

फूल के बगल में हमें बहुत सारे बोड़ा में रखे हुए- --

सोलर लगा हुआ है हमें देखने को मिल रहा है नीचे में हमें रोड देखने को मिल रहा है।

हमे यहां पर एक बरा सा ग्राउंड देखने को मिल रहा है। ग्राउंड के बगल मे हमे--

हमें यहां पे पहारी रोड इलाता का फोटो देखने को मिल रहा है साइड मे हमे यहा पर--

लार्ज लटक फोर व्हीलर लगा हुआ है हमें देखने को--

वो टाइल्स के ऊपर हमें हरा कलर का मैट देखने को मिल रहा है ऊपर में हमें यहां पर--

हमें यहां पर ऊपर से नीचे में बहुत सारा पानी देखने को मिल रहा है पानी के बगल में हमें--

पोल देखने को मिल रहा है पोल के ऊपर बहुत सारे तार लगे हुए हमें देखने को मिल रहे हैं।

हमें यहां पर नीचे में टाइल्स देखने को मिल रहा है टाइल्स के बगल में हमे--

हमें यहां पर माटी देखने को मिल रहा है खुला मैदान हमें यहां पर देखने को मिल रहा है खुला मैदान के बदल में हमें यहां पर--

डब्बा हमें देखने को मिल रहा है वहीं पे हमें--

मीना बाजार व्हाइट कलर से लिखा हुआ है उसके साइड में--

सिलेंडर के बगल में हमें यहां पर टेंट देखने को मिल रहा है।

वाइट कलर का भी हमें टेंट देखने को मिल रहा है।

अंदर में हमें एक ग्राउंड देखने को मिल रहा हैजहां पे पार्किंग तब सुविधा हो सकता है।

वाइट कलर का ऊपर में बोर्ड देखने को मिल रहा है।

पत्ता के साइड मे हमे यहां पर एक फर्श देखने को मिल रहा है फर्स्ट साइड मे हमे यहां पर टेबल देखने को मिल रहा है टेबल के ऊपर हमें--